किसी ने यहां पर फोटो खींची है।

यह एक कार का फोटो है।

यह फोटो जे_सी_बी का है।

यह फोटो बहोत सुंदर लग रहा है।

यह फैब ड्राई क्लीनर्स की दुकान का है।

यह एक कैमरे की दुकान का फोटो है।

यह फोटो एक कपड़ों की दुकान का है।

यहां पर बहोत सारी नाव है।

यहां पर अभी कोई भी नहीं है।

किसी ने यहां पर फोटो खींचा है।

यह बहोत हरा भरा नजारा है।

ओ_आर_एस आइसक्रीम कोल्डिंक बहोत सारी चीजें मिलती है।

यह फोटो एक कपड़ों की दुकान का है।

जिसके बाहर साड़ियां टंगी हुई है।